यह एक चाय कैफे का दृश्य है।

इसके जमीन में वाइट कलर के टाइल्स लगे हुए हैं।

यह एक बेडरूम का दृश्य है।

या एक बैंक का दृश्य है।

यहां पर प्लाईवुड के मदद से इसके काउंटर बने हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे महिलाएं लोग नीचे बैठकर सब्जी बेच रहे हैं।

जीसके बगल में एक राशन का दुकान भी नजर आ रहा है जिसके उपर कूट ब बोडा रखे गये हैं।

सीमेंट के मदद से इसके पीलर बने हुए हैं जो मोटे नजर आ रहे हैं।

उसके ऊपर व्हाइट कलर से पेंट किया गया है।

ये बिल्डिंग का कलर ब्लू व्हाइट एवं ग्रीन दिखाई दे रहा है।

इसके गेट का कलर काला कलर से पेंट किया गया है।

इसके घर के ऊपर लाल कलर की बैनर दिखाई दे रहे हैं।

या एक स्टेट बैंक ए टी एम का दृश्य है।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

इसके दूर में पहाड़ नजर आ रहे हैं जो परछाई दिख रहा है।

और छोटे छोटे पौधे खिले हुए हैं।

यहां पर रोड के रास्ते निकाल रहे हैं जिसपर गेट का कलर काला है।

यहां पर दो बच्चे लोग दिखाई दे रहे हैं जो ब्लू एवं ग्रीन कलर के टी शर्ट पहने हुए हैं।

इसका कलर पीला एवं काला दिखाई दे रहा है।

यह एक साइकिल का दृश्य है।

यहां पर मेहरून एवं व्हाइट कलर से इस पर पेंट किया गया है।

यहां पर दो स्कॉर्पियो दिखाई दे रहे हैं जो वाइट एवं कला है।

इसके घर का कलर भूरा एवं पीला कलर से किया गया है।

यहां पर बहुत सारे लकड़ी के मदद से काउंटर कुर्सी बने हुए हैं।